सामान मांग रहे हैं। सुधा पार्लर बोहोत अच्छा पार्लर है। ये पटना में है शायद।

कटिंग करते करते उसके बाल सहला रहा है और नीचे बोहोत सारे बाल पड़े हुए हैं और वो आदमी कैची हाथ मे लेके उसका बाल काट रहा है और वोह आदमी आईने --